ओ प्लास्टर किया हुआ दिख रहा है वहाँ अंदर के सा एक इंसान खड़ा है उसके मुंह पे उसके मास्क लगा हुआ दिख रहा है वहाँ पे उसके पास एक बक्सा है।

और वह पर बैलून्स का डेकोरेशन किया हुआ है पीले कलर का वहा पर मिक्की माउस दिख रहा है वहा पर भी बलूनस लगे हुए वहा पे कोई इन्सान वगेरा नहीं दिख रहा है।

वह विद्यालय का अअअ गेट दिख रहा है वहाँ पे अ उसका समय का जो कमान बना हुआ है वहाँ पे एक काले कलर का गेट लगा हुआ है।

वहाँ पे रात्रि का समय दिख रहा है कुछ जनता कुछ आदमी कुछ औरतें वहाँ पर खड़ी हुई नज़र आ रही है वहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है।

मस्जिद दिख्रा है मस्जिद के वहाँ पे कुछ डेकोरेशन किया हुआ दिख रहा है वहाँ पे अलग-अलग गुब्बारे लगे हुए दिख रहे हैं वहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है।

और अ दिन का समय नज़र आ रहा है आकाश दिख रहा है सामने बहुत बड़े पेड़ दिख रहे है।

कुछ बसेस नज़र आ रही है ग्राउंड पे रुकी हुई है बस स्टैंड के जैसे नज़र आ रहा है दूर में बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे है।

उसके बाद वहाँ पे एक अ दो आदमी खड़े दिख रहे हैं और दूर की तरफ एक टपरी जैसा दिख रहा है वहाँ पे एक आदमी खड़ा है।

और वहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ लाइट्स हुए दिख रहे है।

ग्रोउण्ड दिख रहा है ग्राउंड पे उम्म कुछ डेकोरेसन किया हुआ दिख रहा है वहाँ पे सफेद कलर की चेयर दिख रही है टेबल दिख रहे है और वह पे कुछ घर जैसा दिख रहा है वहाँ से सिढ़िया नज़र आ रही है चढ़ने के लिये दिन का समय नज़र आ रहा है ।

ऑररर एक लड़का लिये हुए भी एक आदमी दिख रहा है।

यहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र का पानी दिख रहा है बहुत बड़ा पानी है और दूर की तरफ कुछ पहाड़ जैसे दिख रहे है।

और रास्ते पर एक अजो अजीब से दिखरे हैं बूढ़ा आदमी दिख रहा है उन वहाँ पे कुछ जाने आने का रास्ता भी दिख रहा है दिन का समय दिख रहा है।

और भी कुछ अ लड़के नजर आ रहे है वो खेलते हुए नजर आ रहे है उनके पास बेट है वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे है वहाँ पे ग्रीन कलर की घास है और दिन का समय दिख रहा है धूप निकली हुई दिख रही है।

दिन का समय दिख रहा है और रास्ते पे कुछ गाड़ियां पार्क की हुयी दिख रही हैं वहाँ पे छोटा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

कर का कुछ बना हुआ दिख रहा है वहाँ पे एक टपपी जैसा नजर आ रहा है बहुत सारी आदमी सामने से खड़े हुए वहाँ पे एक कैन दिख रहा है| लाइट जलता हुआ दिख रहा है।